इस तस्वीर में मुझे दो चेयर दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे एक बाल्टी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे उगता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहें हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक मिठाई की दुकान दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक तालाब दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे गेट दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे दो खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में मुझे भारत का झंडा दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारी सजावट दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारी रेलवे लाइन दिखाई दे रही हैं।